यहाँ पे बहुत सारे बच्चे डेली के डेली पढ़ने भी आते हैं और खेलते --

और डेली डेली यहां बहुत सारा भीड़ लगता है। ये एक भवन भी है। जो की बहुत बड़ा भवन है। और इस भवन का कुछ खासियत है जो की बहुत ही महत्वपूर्ण खासियत है इस भवन का |

यहाँ पे वेगनार गा --

और यहां पे चली जाते और यहाँ पे बाइक्स लगते हैं डेली और यहाँ पे स्टार्ट करते है सब ठीक करते हैं यहाँ पे बाइक रिपेयरिंग चलता है डेली ।

और यहाँ पर आदमी बहुत सारे आदमी इस डांस को देख रहे है और मजा लुट रहे है।

यहाँ पे फंक्शन सब मनाने आते और यहाँ पे जाड़ा भी है जो कि बहुत प्यारा सीन देखने में लग रहा है और यहाँ पे डी.जे. वीजे सब लगा है।

और यहाँ पर बहुत सारे लोकल रहते हैं और यहाँ से बहुत दूर-दूर से टैटू बनाते हैं लन्दन पेरिस और ये इंडिया में शॉप है जो की बहुत बड़ा --

यहां पर वीडियो भी बन रहा है सभी लोगों का और यहां पे बहुत सारे आदमी भी है और अधिकतर यहां पे महिलाएं और पुरुष ही हैं।

यहाँ पे झाड़ियों का सीन है यहाँ पे जंगल का सीन है जो की बहुत खतरनाक है उसके बगल में एक झील भी है जो की बहुत सारे पानी है ।

यहां पर क्रिस्चयनो सबका शादी हो रहा है। और यहां पे बहोत सारे क्रिस्चयन आए हुए है और यहां पे बहोत सारे क्रिस्चयन आए हुए है और यहां पे सभी पूजा पाठ कर रहे --

ये एक कब्रिस्तान है जहाँ पे सब बहुत सारे कब्र हैं और यहाँ पे बहुत बड़ा कब्र है ये अ दुबई में है जो की बहुत भयानक कब्र है यहाँ पे सभी लोगो का ।